ये कपड़े की दुकान है और यहाँ पे छोटे बच्चों का भी कपड़ा रखा हुआ है और बड़े लोगों का भी कपड़ा है।

ए नदी है और उसके ऊपर से पुल गया है। बहोत अच्छा लग रहा है ये नदी और पुल भी बहोत अच्छा है।

पूरा डेकोरेट किया गया है। बहोत खूबसूरत ही केक है। देखने में इतनी खूबसूरत है खाने में तो और ही ज्यादा अच्छा लगेगा। बहोत टेस्टी होगा।